आगे आग में कुछ जलाया जा रहा है एंड वो आगे में ब्लैक टीशर्ट पहने है नीचे ब्लैक कलर पैंट पहना हुआ है टोपी लगाया हुआ है।

घास हैबहोत सरे फूल उगे हुए है रेड कलर का पिंक कलर का दिखयी और नीचे पिंक और वाइट फूल उगे हुए है पीला रंग का फूल ऊगा है राइट साइड में ये फूलो--

खिड़किया जो खुली हुई है राइट साइड में भी पेड़ है लेफ्ट साइड में भी बहोत सारे पेड़ है लाइट है लेफ्ट साइड पे--

एंड बहुत सारे पोल है एंड बहुत सारे गमले रखे हुए है गमले में बहुत सारे पौधे --

ये बहुत सारे औरते खड़ी है और नीचे बहुत सारे दिया जलाया गया है जिसमे--

एक ट्रक और कार आ रही है लेफ्ट साइड में राइट साइड में बहुत सारे बड़े बड़े पोल है लेफ्ट साइड में पोल है--

फोटो बना एक डस्टबिन है एंड बहुत सारे बाइक स्कूटी खड़ी है तीन आदमी है एक दरवानी कर रहा है एक आदमी अंदर आदमी --

काज ब्रिज है सामने दो लड़के जा रहै है एक येलो टीशर्ट पेहने हुआ है नीचे ब्लैक पेंट एक शर्ट पेहना है नीचे ब्लू पेंट पहना हुआ है बहुत सारी सीढ़िया में चल रही है ऊपर की और--